इस एक बड़ो सा कमरा बनो है। जा में बहोत से मोढ़ा-मोढ़ी बैठे हैं।

ये पेड़ हैं। इस तरह से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पे एके

बहोत सारे डिब्बे और पन्नी के पैकेटो के अन्दर समान पैक किया गया है। बहोत बड़ी शॉप है ये।

और उसपे सब लेटे हुए हैं। सब आड़े टेडे आड़े तिरछे लेटे हुए हैं।

और एक हाथ नाई का दिखाई दे रहा है जोकि कटिंग कर रहा है। हाथ मे केंची --

अपनी अपनी नीले कलर की कालीन पर --

हैं ओर कुछ ज़मीन भी है खाली।